यहां पर गौ सेवा समिति का एक रूम ऑफिस बना हुआ है।

एक छोटा गेट काले कलर का भी लगा है चारों तरफ से बाउंड्री की हुई है।

एक लोहे का कंटेनर बना है जो काले और लाल कलर का है।

और सामने कुछ रूम बने हुए हैं जो सफेद कलर के हैं।

सामने जो मेन गेट हैं वो लोहे का हैं ऊपर की तरफ नीले कलर के बॅनर लगे हुए हैं स --

सामने दो रोड पर लाल कलर के झंडे लगे हैं यहां पर भी कुछ पौधे लगाए गए हैं।

आसपास में कुछ पेड़ भी लगे हुए हैं अंदर की तरफ कुछ जालीनुमा डिजाइन बनी हुई है जो बाउंड्री वाल है और कुछ लोग भी--

यहां पर एक रोड़ है रोड़ के साइड में पूरी लाल मिट्टी है यहां आस पास बिल्कुल लाल मिट्टी हो रही है।

और टाइल्स लगी है और ये पूरा रूम क्रीम कलर से पेंट है सामने एक सफेद लाइट लगा है।

यहां पर एक ट्रैक्टर खड़ा है जो नीले कलर का है।

वहां पर कुछ पेड़ लगे हुए हैं और घर की चारों तरफ से बाउंड्री की हुई है।

यहां पर एक बुक की शॉप है जहां पर बहुत सारी बुकस रखी हुई हैं।

यहां पर पीले कलर का एक स्कूल बना हुआ है जो जगह जगह पर ऑरेंज कलर से भी पेंट किया गया है।

जो मेन गेट हैं वहां से अंदर जाने का रास्ता हैं यह किसी पर्टिकुलर गेम के लिए ग्राउंड बना हैं।

ये बहुत ही सुंदर लग रहे है आसमान में नीले और सफेद बादल हो रहे हैं।

आसपास में कुछ बड़े पौधे भी लगे हैं एक बिजली का खंबा है जो वायर्स से कनेक्ट है और पास में कुछ घास लगी हुई है ।